बैंक ऐ हा ब बैंक ऐ बैंक मा हमन पईसा जमा करथन निकालथन अउ लोन भी एमा देथे--

ये बस हे बस बहुत अच्छा दिखत थे और हमन बस में भी सफर करे हन बहुत बढ़िया लगत थे बहुत लम्बा सफर में आना जाना--

बैंक मे हमन पैसा जमा करे जाथन निकाल थन बहुत बढ़िया सुविधा दीये हे सरकार ह गरीब मन क लिए लोग लाइका मन के भविष्य के लिए भी--